अ दो बाइ एं स्कूटी अलग साइड रखी हुई है एक कार व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है।

आ यहाँ पीछे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक योगा अकादमी दिखाई दे रही है कई सारी लड़किया इसमें योगा करती हुई दिखाई दे रही है यहाँ फैन लगे हुए है और यहाँ टाइल्स लगी हुई है- है-है यहाँ गेट दिखाई दे रहा है अ -अ और काच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।